एक प्रिंटेड चादर बिछाई है।

मॉल में काम हो रहा हैं।

और यहां पर कई तरह की समाने रखी हुई है।

यह एक बस स्टैंड है।

यहां एक बहोत बड़ा मैदान है।

इस रोड में पानी भरे हुई है।

यहां पर महिलाएं काम कर रही हैं।

यह एक अपोलो डेंटल वर्ल्ड है।

यहां दो आदमी चल रहें हैं।

यह एक बहोत बड़ा स्कूल हैं।

यह एक बहोत बड़ा मॉल है।

इस स्टेशन का नाम हरि नगर है।